और कुछ लोग बाहर की तरफ खड़े हैं।

खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं कुछ गाड़ियां सड़क पर जा रही हैं।

और साइड में बहुत सारे पेड़--

समान भी रखा हुआ है शॉप के बाहर--

प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहां पर--

पर लाइट भी दिख रही है।

गार्डन मे शेड लगा हुआ है।

यह एक खेत है खेत में बहुत दूर दूर तक पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर कुछ कुछ दूरी पर छोटे छोटे पौधे लगे हैं।

शोरूम बहुत बड़ा है शोरूम के बाहर--

बंदी हुई है शॉप के अंदर --

तबेले के अंदर भैंस दिखाई दे रही है।

और भैंसों को जंजीरों से बांधा हुआ है।

कुछ आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

सड़क पर ऑटो और व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं बाइक पर कुछ लोग बैठे हैं।

और बर्गर और पिज़्ज़ा की पिक --

और यहाँ पर दो बेंच भीं दिखाई--

नदी में बहुत सारा पानी हैं।

टॉय का कलर अलग-अलग है।

और एक दरवाजा बना हुआ है।